यह छवि में हमें एक ए_टी_एम नजर आ रहा है।

इस पिक्चर में हमें एक मीटर नजर आ रहा है।

यह छवि में हमें बहुत सारे पेड़ और पौधे नजर आ रहे हैं।

यह छवि में हम एक गेट को देख सकते हैं।

इस पिक्चर में हमें लाइटे नजर आ रहे हैं।

इस पिक्चर में हम बहोत सारे झीलों को देख सकते हैं।

इस पिक्चर में हमें एक जिम नजर आ रहा है।

यह छवि में हमें कई व्यक्ति कसरत करते हुए नजर आ रहे हैं।

यह तस्वीर में हमें एक नीले रंग की खुला आसमान नजर आ रही है।

यह छवि में हमें बहोत सारे चिप्स के पैकेट टंगे हुए नजर आ रहे हैं।

यह तस्वीर में हम बहुत से बाईकों और स्कूटीयों को देख सकते हैं।

इस पिक्चर में हम एक झरने को देख सकते हैं।

इस छवि में हम बादलों को देख सकते हैं।

यह छवि में हमें खुले आसमान को देख सकते हैं।

इस तस्वीर में हम खुले से आसमान को देख सकते हैं।

इस पिक्चर में हमें बहुत सारे फूल नजर आ रहे हैं।

इस छवि में हमें पंखे नजर आ रही है।

इस पिक्चर में हम एक पेट्रोल पंप को देख सकते हैं।

जाने वाले पिक्चर में हम एक पेट्रोल पंप वाले मशीनों को देख सकते हैं।

इस तस्वीर में हमें एक कुर्सी नजर आ रहा है।

यह छवि में हम एक मकान को देख सकते हैं।

पिक्चर हम में हम बहुत सारे मनुष्य को इकट्ठे हुए देख सकते हैं।

छवि में हमें बहोत सी गाड़ियां नजर आ रही हैं।